मुझे यहाँ कुछ बाइकस वगैरा दिख रही है कुछ पर्सन जाते हुए दिख रहे है एक पर्सन दिख रही है जिसने बाइक पर बैठे हुए दिख रहे है व्हाइट कलर की शर्ट पहने हुए--

नीचे एक बिल्डिंग दिख रहा हैं बिल्डिंग का पेंटिंग कलर वाइट कलर दिख रहा हैं काँच वगैरा लगे हुई दिख रहा हैं जो ग्रे कलर में दिख रहे हैं कुछ लाईटे से दिख रही है आस पास में यहां पर किसी ने येलो कलर में साड़ी पहन रखी हैं ।

परसों यहाँ पर ब्लैक व्हाइट और येलो कलर की पहन रखी है और यहाँ पर आसपास में आसमान दिख रहे है आसमान कुछ ब्लू कलर में दिख रहा है कुछ ग्रीन कलर के पेड़ भी दिख रहे है और यहाँ पर जो परसन है उनके बीच में कुछ--

कुछ येल्लो कलर में दिख रहे हैं यहाँ पर कुछ बर्तन रखे हुए दिख रहे हैं जो की कुछ स्टील के हैं और कुछ ताम्बे के हुए दिख रहे हैं।

इस इमेज में बिल्डिंग दिख रहा हैं बिल्डिंग का पेंटिंग कलर कुछ ग्रीन और येल्लो दिख रहा हैं सामने में एक डेट वगैरा दिख रहा है आस-पास में काफ़ी सारे पर्सन दिख रहे हैं इधर उधर

ऊपर आसमान दिख रहा है आसमान ब्लू कलर मे दिख रहा है आसपास मे पेड़ दिख रहे है पेड़ ग्रीन कलर मे दिख रहे है फिर वहा पर नीचे मे कुछ ग मिट्टी वगेरह दिख रही है अ उ ग्रीन कलर की घास वगेरह दिख रही है।